ये एक पेट्रोल पंप है जिसमें बहोत सारे नीचे मार्बल भी लगे हुए हैं बहोत सारे बल्ब भी लगे हुए --

ये एक बहुत बड़ा जगह है यहां पे बहुत सारे तार नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे लाइट भी हैं और पंखे भी हैं।

एक कुर्सी है और बहुत सारे बैलून रखे हुए हैं और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और बहुत सारी कुर्सियां भी हैं और बहुत सारी तस्वीर भी चिपके हुए।

कर्कट भी नज़र आ रहा है और बहुत सारे डिब्बे भी नज़र आ रहे हैं जो नीले रंग के है और सप्लाई पानी वाला--

यह एक बहुत बड़ा दवा दुकान है जिसमें बहुत सारे आदमी नज़र आ रहे हैं औरत नज़र आ रहे हैं।

और बहुत बड़ा एक काउंटर दिख रहा है और बहुत सारे नीचे मार्बल लगे हुए है।

ये एक कुंग फू क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं कुंग फू करते।

ये एक बड़ा रूम है जिसमें बहुत सारे कुर्सी रखे हुए हैं बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं।

ये एक ऑफिस है जो कंप्यूटर सेंटर जावा कंप्यूटर सेंटर ऑफिस के नाम से है।